कई तरह के बैंक से रिलेटेड काम कर सकते हैं। चाहे वो कैश विथड्रा करना हो या --

एक दम नई खरीदी गई है जैसा की आप देख सकते हैं इसमें --

किसी मंदिर का प्रतीत हो रहा है। जहां गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है और --

दिया गया चित्र किसी विद्यालय की किसी ऐक --

चर्च के गेट अभी बंद हैं और आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं है।

गुलाबी रंग के वस्त्रों से आप देख सकते है सामने एक व्यक्ति अपनी बाइक पर बैठा हुआ है।

और काफी लोग घाट की सीढियों पर उतर और चढ़ रहे हैं।

दिया गया चित्र किसी पौराणिक मंदिर का प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते है।

कुछ मैनेजमेंट्स पर लगे हुए हैं।

पहाड़ी जगह का लग रहा है जहाँ आप देख सकते हैं एक साथ कई सारे पहाड़ नजर आ रहे हैं।

दिया गया चित्र किसी बस --

दिया गया चित्र किसी रेलवे स्टेशन --